और एक पंखा भी टंगा हुआ है इस दुकान में अनेक प्रकार की गाड़ियां रखी हुई है।

यह एक रेलवे प्लेटफार्म का दृश्य है प्लेटफार्म के पीछे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

प्लेटफार्म के ऊपर में करकट लगा हुआ है।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

इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं जो एक तरह के हैं कमरे में एक एक खिड़की भी है।

यह एक छोटे से बिल्डिंग का दृश्य है। इसकी दिवार व्हाइट कलर का है।

यह एक दुकान के कमरे का दृश्य है।

और बहुत सारा कपड़ा भी सजा कर रखा हुआ है।

दीवार पर ऑरेंज कलर पेंट है इसके सीलिंग में छोटे छोटे व्हाइट बल्ब भी लगे हुए हैं।

तबेले के सामने एक बड़ा पेड़ भी है।

यह एक बड़े से फर्नीचर दुकान का दृश्य है इस दुकान की दीवार की कलर व्हाइट पुट्टी से किया गया है।

और छोटे छोटे व्हाइट बल्ब भी लगे हुए हैं इस दुकान में अनेक प्रकार के सोफा और अलमारी भी रखे हुए हैं।

तालाब के चारों तरफ छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

इसके ऊपर में करकट लगा हुआ है इसके नीचे की जमीन सीमेंट का है।

नीचे जमीन पर कार्टून में मैगी और यिप्पी भी रखे हुए हैं।

इस होटल की दीवार पर दो ए_सी भी लगे हुए हैं।

इस दुकान में एक टेबल भी है और एक लाल रंग की कुर्सी भी है।

घर के आगे सीढ़ियों पर टाइल्स भी लगी हुई हैं।

दुकान का गेट आसमानी रंग का है दुकान के ऊपर एक करकट भी लगा हुआ है।

दुकान के अलमारी में अनेक प्रकार के रंग बिरंगे साड़ियां रखे हुए हैं।

गुफा के दीवार पर चॉक की सहायता से कुछ लिखा हुआ है।